लोड के साइड में दीवाल है।

यहां पर साइड में एक ऑटो है।

मांडू देवी यह माताजी है वहां का यह तस्वीर है यहां काफी सुंदर है।